एक बड़ा-सा बल्ब जल रहा हैआजू-बाजू कुर्सियाँ दिख रही है डली हुई एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा ----

मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग के सामने एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है। ग्राउन्ड में बोहोत --

मुझे एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है जिसके ऊपर ब्रैन्ड बॉक्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे एक बड़ा-सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में कॉर्नर पर कुछ मोटर साइकल पार्क दिखाई दे रहे है अंदर की तरफ कुछ कार पार्क दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहे हैं जस्ट उनके पीछे एक बड़ा सा खंबा दिखाई दे रहा है और खंबे के साइड मे एक व्हाइट कलर का घर दिखाई दे रहा है। खंबे के और घर के आआ चारों तरफ पेड़ घने-घने बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर की तरफ छत दिख रहा है बादल दिख रहा है नीचे छोटी-छोटी खिड़कियाँ खंड दिख रहे है बगल मे एक और बिल्डिंग दिख रही है।

मुझे एक गैलरी दिखाई दे रही है। गैलरी मे एक मोटरसाईकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ऊपर एग्जिट फैन दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक होटल दिखाई दे रहा है जिसके सामने राज पाल पैलस होटल का बोर्ड लगा हुआ है उसके सामने एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पेहने हुवे लड़का दिखाई दे रहा है साइड मे मोटर साइकिल खड़ी हुवी दिखाई दे रही है।

मुझे कमरा दिखाई दे रहा है। कमरें मे टीवीएस की बोहोत सारी मोटरसाईकिल पार्क दिखाई दे रही है।